यहां बहोत सारे घास दिख रहे हैं पौधे दिख रहे हैं पीछे पहाड़ दिख रहा है खुला आसमान दिख रहा--

यहां पे पीछे दो ग्रिल दिख रहा है एक दरवाजा दिख रहा है और फ्लावर दिख रहा है।

और नीचे कुछ फ्लावर लगे हुए हैं जो ऑरेंज कलर के हैं और एक फैन दिख रहा है।

यहां दो आदमी कुर्सी पर बैठे हुए हैं कुर्सी का कलर लाल है।

यहां पे एक छपरा दिख रहा है जो उजले रंग का है।

यहां पे नीचे एक पोस्टर लगा हुआ है यहां पे एक झोला दिख रहा है यहां दो कुर्सी दिख रहा है कुर्सी का कलर ब्लैक है।

ऊपर में एक फ्रेम है जिसके अंदर एक आदमी का चित्र बना हुआ है।

यहां पे बहुत सारे रंग बिरंगे फ्लावर है बगल में एक घर दिख रहा है उसके ऊपर टंकी है यहां पे बहुत सारे तार दिख रहे हैं।

यहां एक बच्चा हाथ जोड़कर झंडा लिया हुआ है और कुछ बच्चे भी जोड़े हुए हैं और एक बच्चा चश्मा पहना हुआ है।

यहां बहुत सारे महिला भी दिख रही है यहां पे एक आदमी खाना खा रहा है और यहां पे एक आदमी कुर्सी में बैठा हुआ है लाल कलर का कुर्सी दिख रहा है यहां पे आसमान दिख रहा --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

दुकान के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है उसके बगल में एक कूलर दिख रहा है।

मंदिर के बगल में कुछ इंटर टाइप के बिल्डिंग दिख रहे हैं यहां पे कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

यहां पे नीचे कचड़ा रखा हुआ है यहां पे एक लाइट लगा हुआ है।

पीछे दो बच्ची और दिख रही है उसके हाथ में गुबार है पीछे केले का पेड़ दिख रहा है और पीछे बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे है।

एक आदमी के हाथ में झोला दिख रहे हैं यहां पे एक आदमी के हाथ में कपड़ा है।

यहां पे एक आदमी और बात कर रहा है यहां एक कार पार्क है यहां बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे खिड़की दिख रही है।

यहां कुछ रंग बिरंगे बॉक्स भी रखें हुए है कोई ब्लू कलर का बॉक्स है कोई ऑरेंज कलर का बॉक्स है।

ऊपर में लाल कलर का बॉक्स है और ऊपर में लाइट जल रहा है।

यहां पे एक कुर्सी दिख रहा है येलो कलर का बगल में कोई दो नल दिख रहे हैं।

यहां पे कुछ बाइक लगा हुआ है यहां पे कुछ लोहे टाइप के सर्कल टाइप के कुछ बने हुए दिख रहे है आकार के--

इसके नीचे एक लड़का खड़ा हुआ दिख रहा है यहां बहुत सारी लडकी भी दिख रही है और औरत भी दिख रहे हैं।